यहाँ पर एक घर टाइप दिख रहा है और लकड़ी से बना कुछ अ --

यहाँ पर सामने की साइड बोहोत बड़े पेड़ दिख रहे हैं सामने की साइड और कुछ मूर्तियां दिख रही हैं यहाँ पर।

यहाँ पर बोहोत बड़ा बिल्डिंग दिख रहा है एक वाइट कलर का और ब्लू कलर में दिख रहा है।

और ऊपर के साइड आसमान दिख रहा है और बहुत से पेड़ दिख रहे हैं सामने के साइड ।

सामने के साइड एक अअअ घाटी टाइप दिख रहा है।